और ये कोलेज काफी बड़ा हैं।

और बहुत सारा सिलेंडर का खाली डब्बा है और ये घर टूट चूका हैऔर यहाँ पे बहुत सारा कचरा भी है और एक गेट भी है यहा पे|

और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है काफी सारे लोग आते है चाय पिने के लिए।